यह एक शॉप है सूट्स की साड़ियों की।

सामने हॉस्टल्स हैं यहां पर कार खड़ी हुई है बाइक्स खड़ी हुई हैं।

ये रोड है यहां पर मकान बना हुआ है दो एक कच्चा मकान बना है सामने गेट है।

ये एक हॉस्पिटल है यहां पर एक कुत्ते का ऑपरेशन हो रहा है दो डॉक्टर्स यहां पर ऑपरेशन कर रहे हैं।

यह साइड में दो मकान है एक कच्चा एक साबूत--

यह एक बिल्डिंग है श्रीराम नाम की यहाँ पर बाहर पार्किंग में बहुत सारी कार्स खड़ी हुई हैं।

लड़की स्कर्ट में है सॉक्स के साथ दोनों के मुंह छुपे हुए हैं और ये एक आदमी खड़ा हुआ है औरत बैठी हुई है।

यहां पर चेयर्स टेबल्स रखी हुई हैं जग रखा हुआ है।

बलुन्स भी लगे हुए रेड और व्हाइट यहां पे बॉडी लोशन लगा हुआ है उसके साथ हैंड वॉश भी रखा हुआ है।

साइड में दो पेड़ लगे हुए हैं यह दो फ्लोर का हॉस्टल है यहां पर कपड़ डाए हैं एक फ्लोर पे ज्यादा है।

यह सामने स्टेज है यहाँ पर बहुत सारी चेयर्स रखी हुए हैं एक बीच में टेबल रखी हुई है साइड में तीन सर खड़े हुए हैं।

और साइड में लाइट्स लगी हुई है यहाँ पर और दो एक आदमी फोन पर बात कर रहा है और एक आदमी साइड में दिख रहा है।

ये एक प्रेस की दुकान है यहां पर एक आदमी शर्ट पे प्रेस कर रहा है सामने दो बैलूंस लगे हुए हैं कलरफुल चार बैलूंस लगे हुए हैं।

वो सामने ब्लैक कलर की डंडी लगी हुई है उसमें भी बल्फ बल्ब लगा हुआ है नीचे।

और बहुत सारे लोग यहां पर माता जोड़ रहे हैं एक और साइड में खड़ी हुई है।

और दो पंखे लगे हुए यहां पर और बहुत सारे फ्रूट्स भी रखें हुए यहाँ पर--

दो औरतें खड़ी हुई हैं और एक आदमी खड़ा हुआ है।

चौकीदार बैठा हुआ है चेयर पे सामने उसकी टेबल है अंदर हॉस्टल को जाने का एक गेट है साइड में पेड़ पौधे लगे हुए है।

सामने बहुत बड़ी सारी बिल्डिंग है बाइक पे दो आदमी हैं एक कार खड़ी हुई है जिसमें झंडा लगा हुआ है एक कार आदमी कार में बैठा हुआ हैं।

सामने बहुत बड़ी सारी बिल्डिंग बनी हुई है एक औरत खड़ी हुई है।

यहां पर एक शूटिंग हो रही है स्विमिंग पूल है यहां पर बहोत सारे लोग खड़ो हुए हैं।

साइड में एक बिल्डिंग है जीने भी लगे हुए हैं यहां पर और सामने भी एक बिल्डिंग है यहां पर।

यह एच _डी_एफ_सी बैंक है यहाँ पर बाहर तीन आदमी खड़े हुए हैं एक अंदर आदमी खड़ा हुआ है।

और बड़ी सारी टेबल रखी हुई एक साइड में और टेबल रखी इसको पेपर रखें हुए हैं।

इसकी सीढ़ियां लगी हुई हैं एक बड़ा सा गेट हुआ है बाहर एक पोस्टर लगा हुआ है उसके साइड में दो पेड़ लगे हुए हैं।

दो फैन लगे हुए हैं यहां पर लाइटें लगी हैं यहाँ पर सामने एक चेयर रखी है उस पे भी एक लड़की बैठी हुई है।

यह सामने बहुत सारी हरियाली है बड़े बड़े सारे पेड़ लगे हुए हैं यहाँ पर और सामने छोटा सा घर है यहाँ पर नीचे--